सजावट किया गया है बहुत अच्छा किया गया है।

छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं जो पौधे में --

और यहाँ पर पानी भी की मात्रा कम दिखाई दे रही है।

और एक महिला इधर आ रही है।

वो जो पहाड़ है इसमें सिर्फ दो से तीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं |

यहाँ एक बस दिखाई दे रही है |

और यहां पर बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं।

और यहां टाॅकिज में बहुत सारे व्यक्ति भी बैठे हुए --

यहाँ पीछे की कलर ब्लू कलर की है।

और यहाँ कार कार --

और विद्यालय के सामने बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

जो दो दोनों हाथ को फैला कर डांस कर रही है।

माला है उम्म यहाँ पर | बहुत सारे की गयी है |